मैडम हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस पहन रखे है कुछ अ- अलग ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं।